चारों तरफ पेड़-पौधे लगे हुए हैं बिल्डिंग बनी हुई है आसमान भी पर्पल ब्लू कलर से शो हो रहा है।

जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन दिख रहा है और बहुत सारी प्यूपिल --

जिसमें बोहोत सारी लाइटिंग लगी हुई है। डेकोरेशन हुआ है। चेयर्स और --

यह जो रेड कलर का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको यह पोस्ट ऑफिस का बॉक्स है। क्लेयरेंस वाला बॉक्स है।

इस वाटर पार्क में लोग अपनी टिकट कटवा कर --

यह फोटो जो आपको नजर आ रहा है। यह फोटो किसी ग्राउंड का है जिसमें छोटी-छोटी घास उगी हुई है।

यह एक मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे स्टेच्यू दिख रहे हैं जिसमें कुछ आदमी बने हुए हैं।

मोटे-मोटे पत्थरो से ये घर बना हुआ है जो कि बोहोत ही मजबूत --

यह जो सीन दिख रहा है वह एक पार्क का है। जिसमें झूले लगे हुए हैं उस झूले और --

यह जो द्रश्य आपको दिखाई दे रहा है इसमें लेडिजें गरबा --

कर रही हैं जोकि नवरात्रि में गरबा किया जाता है। यह समय नवरात्रि का ही होगा जिसमें औरतें और --

इसमे इंसानों के लिए बहुत ही जादा सुविधायेजनक काम हुआ है।

यह एक कंप्यूटर क्लास है जिसमें कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने एडमि लिया है वहां पे कंप्यूटर सीख रहे हैं।

यह एक शिव मंदिर है जिसमें शिव म शिवजी की स्थापना हुई है।

जिसमें दीवारों पर लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय।

इस चित्र में आप देख सकते हैं की बहुत से स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिसमें कंपटीशन चल रहा है।

जो कि कुछ लोग पेपर कटिंग से कुछ पेपर क्राफ्ट बना रहे हैं और कुछ लोग दिये बना रहे हैं।

जो भी अद अलग अलग प्रकार से तैयार हो रहा है और मैंडम भी बैठी हुई हैं।

सनातन धर्म का दर्शन कर रहे --

एक ऑटो खड़ा हुआ है और बहुत सी पब्लिक खड़ी हुई हैं वह पब्लिक ऑटो से डिस्कशन कर रही हैं।